और एक आदमी जो है दो आदमी दो आदमी उसको देखे रहे है आप कुछ बोरी लेके वो जो है आपस में जो है वो नई-ऊपर से उठाके वो जा रहे है यहाँ और पीछे एक साईकिल भी देख सकते हो पीछे आपको कुछ लेडिस भी दिखाई देंगी।

और भी कई लोग आपको इसमें दिखेंगे एक लेडी भी दिखाई देगी बैठी हुई कई इसमें आदमी हैं बच्चे भी हैं एक लड़का है जो की बैग लेके बैठा हुआ है पिंक कलर--

और ये एक स्टेज है क्योंकि इस स्टेज पे पीछे आप देख सकते हैं कि कोई एक इंस्ट्रूमेंट वो बजाता हुआ येलो कलर की शर्ट पहना हुआ है ऑरेंज कलर की शर्ट पहना हुआ है भजन बजा रहे है पीछे आप देख सकते हो की क्रॉस भी बना हुआ है रेड कलर का।

और इसमें बिल्डिंग में आप देख सकते हो कि काफी पुरानी आपको बिल्डिंग दिख रही हैओर इसमें जो है आप को गेट दिख रहा है।